यहा पर की भईया किताब के साथ सेल्फी ले रहा है दिखने मै आ रहा हे की बहुत सारा अलग अलग किताबे कॉपी वगेरा--

जैसा की आप को दिखाय दे रहा है पास पास में छ बस नही सात बस हैं भाई सात बस खड़ी है।